तरह-तरह के पेड़-पौधे हैं ।

रोड है जहाँ पर व्हाइट कलर का --

बैग लेके और झोला लेके--

आसा कॉलेज जिसका नाम है विल्लिअम्स हाई स्कूल सुपोल सामने में एक वाइट कलर का कार खड़ा हुआ है और बाइक सब है।